इस चित्र में यहां पर काफी कुर्सियां नजर आ रही है।

कुर्सियों के साथ में एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है। जहां पर एक केतली और एक कप भी रखा हुआ है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा पत्थर नजर आ रहा है।

वहीं कुछ खेत भी नजर आ रहे हैं।

इसके अलावा काफी सारे पेड़ पौधे भी हैं।

वही राइट साइड में बिल्डिंग की बिल्डिंग नजर आ--

कपड़े पहने हुए हैं जोकि पीले रंग के हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ी स्कूल की इमारत नजर आ रही है यह इमारत हरे रंग की है।

एक बाइक सवार चलता हुआ नजर आ रहा है वहीं उसके आगे एक साइकल वाला सवारियों को लेकर जाते हुए नजर आ रहा है।

कहीं यहां पर ट्यूबलाइट भी नजर आ रही है।

इस चित्र में काफी सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग के नीचे साइड कुछ पानी भी नज़र आ रहा है।